आस्टेटस लगाएंगे बहुत अच्छा नज़ारा हैये देखने लायक ही नजारा है बहुत सुन्दर लग रहा है जो भी हैबोहोत सुन्दर है।

हमलोग का ही बहोत अच्छा लग रहा है देखने में कितना सुन्दर लग रहा है ये भी देख सकते है आपलोग भी देख सकते है हम भी देख रहे है कितना अच्छा चीज़ है। ये देखने लायक ही मिलेगा कितना सुन्दर लग रहा है ये चीज़ देखिये बहुत सुन्दर लग रहा है बहुत अच्छा है बहुत सुन्दर है।

क्या बात है कितना अच्छा है ये देखिये कितना सुन्दर लग रहा है कितना मस्त लग रहा है इसका नजारा देखने के मिल रहा है कितना बढ़िया चीज़ है ये चीज़ कितना अच्छा लग रहा है इधर कितना सुन्दर-सुन्दर नजारा है मत पूछिए बोहोत झक्कास नजारा है।

कितना मस्त लग रहे है हेंडसम दिख रहे है बहोत अच्छा लग रहा है बहोत सुन्दर लग रहा है क्या बताऊ आपको मैं बहोत अच्छा लग रहे है आपलोग सबचीज बहोत अच्छा लग रहा है आपलोग का कपड़ा वाइट कलर हमको बहोत पसंद है बहोत अच्छा लग रहा है।

क्या बताऊ बहुत सुन्दर लग रहा है दीदी बहुत अच्छा है हे भगवन! कितना मस्त यहाँ पे झाड़ू पोछा भी लगाने वाली कितना साफ सुथरा काम करती --

इतना कला होता है उनके हाथ में देख रहे हैन कितना गोले-गोले बनाया हैकितना बड़िया लग रहा हैबोहोत सुन्दर बोहोत अच्छा--

अरे कितना अच्छा आदमी भी सब बोहोत अच्छा से काम कर रहा है बोहोत सुन्दर --